आसपास बहुत ही ज्यादा वेहीकल्स हमें दिखाई दे रही है और आसमान का रंग --

ऊपर एक इमारत बनी हुई है जिसमें एक लड़का खड़े होकर अपनी फोटो खिंचवा रहा है।

इमारत जैसी या जो किसी का घर भी हो सकता है इसके आस पास कोई लोग हमें नहीं दिख रहे--

इस तस्वीर में लोगों की एक लंबी लाइन भी लगी हुई है।

ये दरअसल फोटो एक रात में खींची गई है।

और पहाड़ी इलाके का दिखाया जा रहा है इसमें एक इंसान पहाड़ में जाने की कोशिश कर रहा है।

एक जो एक्वेरियम पड़ा हुआ है उसका है इसमें मछलियां तैर रही हैं।

बच्चों को नीचे पढ़ा रहा है।

बच्चे बहोत ही ध्यान से टीचर की बात सुन रहे हैं कुछ समझ रहे हैं।

यह दृश्य बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हमें दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य देखने में बहोत ही ज्यादा आकर्षि--

आकर्षित और रोमांचक दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य हमें किसी खेत का दिखाई दे रहा है।

हमें दीवारों का रंग सफेद दिखाया गया है और आस पास हमें कुछ लो लोग नहीं दिखाए गए--

इसमें से अब एक ही इंसान डांस कर रहा है।

इसमें ये कंप्यूटर ग्लॅब हैं जिसमें एक कंप्यूटर एक मेज पर पड़ा हुआ हैं।

इसमें ऊपर मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा है।

इस तस्वीर देखने में बहोत ज्यादा आकर्षित है।

इस दृश्य में हमें एक स्कूल की फोटो दिखाई गई है जिसके ऊपर बहुत ही बड़ी बड़ी तीर नीचे हरी भरी--